बहोत सारे मैन दिखाई दे रहे हैं।

उससे नीचे बहुत सारी लोटियां दिखाई दे रही हैं।

ऊपर बहुत सारे मैन दिखाई दे रहे।

और ये बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है।

राइट साइड इसकी बाउंड्री भी दिखाई दे रही है।

सबने हेलमेट पहने हुए हैं।

बहुत अच्छी अच्छी लाइट लगाई हुई है।

सारे जगह हरे भरे घास हैं।

सामने देखिए बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है।

और व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

पीछे येलो कलर का मकान है रेड कलर की बाउंड्री है।

सामने देखिये एक मंदिर है।

यहां पर बहुत सारे मैन स्टूडेंट्स बच्चे हैं।

और मकान पर कुछ लिखा हुआ भी है।

सामने देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ है पेड़ है पेड़ के किनारे नदी किनारा है।

मकान पे येलो और ऑरेंज कलर की बाउंड्री हो रही है।